यह एक दुकान का बाहर का दृश्य है जहां पे बहुत सारे पोस्टर लगाए गए हैं।

यह एक दुकान का बाहर का दृश्य है।

वहां पे छोटा सा टेंट भी लगाया गया है जिसका रंग पिंक है।

बिल्डिंग भी बनाया गया है और वहां पे बहुत सारे पेड़ भी है।

यहां पे बहुत ब बहुत बड़ा सा पोस्टर भी लगाया गया है।

यहाँ पे एक गेट भी लगाया गया है जिसका लकड़ी एवं कांच की मदद से बनाए है।

एक आदमी भी बैठा हुआ है जिसका शर्ट का कलर गाजरी एवं पैंट का कलर ब्लैक है।

यहां पे दो आदमी भी हैं जिसका मुंह पे ब्लर किया गया है।

कार का रंग व्हाइट एवं ब्लैक है।

बाउंड्री के अंदर एक दुकान भी है।

उसके मुंह पर ब्लर किया गया है तथा वहां पे एक पंखा भी लगाया गया है।

यहां पे पानी सप्लाई करने के लिए मशीने भी रखी गई हैं।

बहुत सारे पेपर भी हैं।

यह एक मैदान का दृश्य है जहां पे बहुत सारे आदमी दिख रहे हैं।

यहां पे कुछ पत्ते पीले एवं हरे भी दिख रहे हैं।

यह एक दुकान का बाहर का दृश्य है जहाँ पे एक पोस्टर लगाया गया है पोस्टर पर लिखा है रियलमी ।

यहां पे फूल का रंग पीला एवं व्हाइट तथा बैगनी कलर का है।

यहां पे एक लोहे की मदद से टेबल भी बनाया गया है।

ऑफिस मे दो चेयर भी है जिसका रंग गोल्डन एवं ब्लैक है।

बस का कलर व्हाइट एवं ब्लैक है।

यह एक पार्टी का दृश्य है जहां पे टेंट लगाया गया है उसका रंग क्रीम और रेड है।

यहां पे चेयर भी है जिसका रंग रेड कलर का है।

बैलून से भी सजाया गया है जिसका रंग व्हाइट और ब्लू है।

स्टील एवं कचकाड़े के भी बर्तन रखे गए हैं।

यह एक बिल्डिंग का दृश्य है जहां पे एक पोस्टर लगाया गया है और पोस्टर में लाइट भी लगाए गए हैं।

यहां पर छोटे छोटे लाइट भी है जो कि पीला कलर का है।

स्विमिंग पूल के ऊपर टाइल्स बैठाया गया।